पार्क में पेड़ो की छाया और गोल लालटेंन की रोशनी से एक मन्त्र मुग्ध कर देने वाला वातावरण बनाता है।

यहां कई एयर कंडीशनर की बाहरी इकाइयां रखी हुई है।

और आसमान साफ और नीला है।

तस्वीर में एक एयर कंडीशनर की बाहरी यूनिट दिखाई दे रही है जिसमें मरम्मत रखरखाव के लिए खोला गया है ।

तस्वीर में एक कमरा का दृश्य दिखाई दे रहा है एवं कमरे का दीवार का रंग सफेद है ।

और कुछ बजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

इमारत लाल रंग की है और इसमें कई खिड़कियां और दरवाजे हैं।

अस्पताल के सामने एक पार्किंग क्षेत्र है जिसमें कई करें खड़ी हैं।

तस्वीर में एक की दृश्य दिखाई दे रही है ।

फर्श बिल्कुल साफ और स्वच्छ है।

कमरे में एक कोने में एक मूर्ति रखी हुई है।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

दुकान के काउंटर पे कुछ बेड़े रखे हुए भी हैं एवं कुछ इमारतें भी दिखाई दे रहे हैं।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

यह तस्वीर में एक सड़क पर चलते हुए दो भैंसों का दृश्य दिखाया गया है।

और आसमान में बादल छाए हुए हैं अ सड़क के किनारे पेड़ हैं।

दृश्य एक ग्रामीण क्षेत्र जैसा दिखाई दे रहा है।

में एक बड़ा मगरमच्छ का दृश्य दिखाई दे रहा है जो एक तालाब के किनारे पर लेटा हुआ है।

मगरमच्छ आराम से लेटा हुआ है और शांति से सो रहा है।